यहाँ एक दुकान दिखाई दे रही है ये चिकित्सालय दिखाई दे रहा है।

यहाँ एक फोर व्हीलर दिखाई दे रही हैं जो की सफेद कलर की हैं जो सुधारी जा रही हैं।

खंभे दिखाई दे रहे हैं काले कलर के दीवाल दिखाई दे रही हैं जो की काले कलर की दिखाई दे रही हैं।

एक बहुत बड़ा खेत दिखाई दे रहा हैं जिसमे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं कुछ फसल भी दिखाई दे रहे हैं पानी भरा हुआ हैं पीछे के मंदिर जैसा भी दिखाई दे रहा हैं कुछ जानवर दिखाई दे रहे हैं।

एक बहुत बड़ा दरवाजा दिखाई दे रहा है गेट जो की पत्थर से बना हुआ है दरवाजे के बीच से ऊपर आसमान भी दिख रहा है पौधे भी दिखाई दे रहे हैं और रोशनी दिखाई दे रही हैं कुछ घाँस भी दिखाई दे रहे--